इस पिक्चर में मुझे एक ऑफिस अ लग रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा--

और एक अ घोड़ी है जिस पर चढ़कर एक लड़का मतलब--

इस पिक्चर में मुझे एक अ ग्राउंड दिख रहा है और काफी पीछे एक काफी रूम्स अ बनाया हुआ है और--

इस पिक्चर में मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है जो की बहोत सुंदर दिखा देखने में लग रहा है और काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।

जिसमें वीवो के ओपो के एम_आई के --

और इसमें अह उसके रिलेटेड मोबाइल एक्सेसरी का--

अ इस पिक्चर में मुझे एक ग्राउंड दिख रहा है।

और इसमें एक लड़का दिखाई दे रहा है पुतले के रूप में जिसमें उसने एक पत्थर को उसने अपने हाथों से उठा रखा है।

और कुछ बॉटल्स पड़ी है वाइट ब्लू कलर की और शायद कुछ सॉसेस वगैरा है।

मुझे एक लॉ एंड मेडिकल कंपलेक्स दिखाई दे रहा है।

बाहर एक कंटेनर पड़े है बॉटल्स के--

के आस पास है और चेयरें पड़ी है।

काफी अच्छी व्हाइट और पर्पल और गोल्डन कलर से डेकोरेशन की गई है।

इस पिक्चर में कोई एक रोड दिखाई दे रही है पतली सी--

और इसमें दो एक बुढ़ी आंटी और एक बुढ़े अंकल दिख रहे हैं।